घर के बगल में लगते है और संडे संडे को लगते है।

शादी में घूमने गया है वहां बोहोत सारा चीज खाया पिया है वाइन ताइन पिया है।

ये हमारे बगल के जनरल स्टोर है यहाँ पे बच्चे के लिए सारा चीज़ कॉपी कलम पेन --

और औजार-बॉक्स पेन ये सब सारे चीज मिलते हैं।

यह हमारे गाँव का गवर्नमेंट स्कूल है इसमे बहोत सारे बच्चे आते हैं पढ़ाई होते है।

और मेरे बगल में इसमें आठ महिला टीचर है आठ जेन्ट्स टीचर है।

इसमें बोहोत सारे बच्चे भी पढ़ते है और ये सारे बच्चे के लिए पोशाक है ये सरकार के गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आई है और ये सब बच्चे --